यह स्कूल का मेन गेट है यहां पर एक कैमरा लगा हुआ है।

और यहां पर एक गेट भी है जिस पे बहुत अच्छी सी डिजाइन बनी हुई है।

और यहां पर बहोत बड़े बड़े से पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह एक हिंदू धार्मिक मंदिर है यह बहोत ही बड़ा है।

यहां पर बहोत सारे बेड भी पड़े हुए हैं और उनपे नीली चद्दर बिछी है।

बिल्डिंग में बहोत सारी कांच की खिड़कियां भी हैं।

यह एक रोड साइड फोटो है यहां पर एक दीवाल है।

और यहां पर वाइट कलर की लाइट भी है।

यहां पर चटनी और डोसा रखा हुआ है।

यहां पर दो स्टील के गिलास भी रखे हुए हैं।

इसका बोर्ड येलो और रेड कलर का है।

यह एक वाटर पार्क है। यहां पर बहुत बड़ी सी येलो कलर की डक रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारे जीमें और बहुत सारी बाइक्स भी खड़ी हैं।

और यहां की रोड ईंटों की बनी है यहां पर बहोत सारे लोग भी है।

और यहां पर बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां पर ऑरेंज और ब्ल्यू कलर की पी_वी_सी पैनल है।

और यहां पर एक रोड है जो डामर की है।

इसकी दीवाल पर सरस्वती माता की फोटो भी बनी हुई है।

और इस पोस्ट ऑफिस की दिवालें व्हाइट कलर से पुती हुई हैं।

यहां पर बहुत सारे व्हाइट कलर के गमले रखे हुए हैं और यहां पर टाइल्स लगी हुई है।

और यहां पर एक आदमी बड़ी सी चाभि लिए एक औरत को दे रहा है।

बहुत सारी ट्यूबलाइट और बहुत सारे पंखे भी लगे हुए है।

यहां पर एक स्टूल और एक रेड कलर का डस्टबिन भी रखा हुआ है।

जो ब्लैक कलर के हैं और इसकी छत भी ब्लैक कलर की है।

यह एक बहोत बड़ा सा पार्क है और यहां पर पत्थरों की रोड है।